यहां पर हम अलग अलग प्रकार के रॉयल --

यहां पर हम देख सकते हैं कि एक--

इस तसवीर में हम एक कपड़ो के शोरूम का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में हमें एक डेली नीड की दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पर कई सारी वैरायटी की नमकीन भी दिख रही है।

हम यहां पर देख सकते हैं कि यह सब एक गोले में बैठकर व्यायाम कर रहे हैं।

राधाकृष्ण जी की मूर्ति का दृश्य दिखाया गया है।

जिस में की लोहे का गेट लगा हुआ है।

यहां पर काफी शांति लग रही है।

इस तस्वीर में हमें एक घर में बने हुए मंदिर का दृश्य दिखाया गया है।

हमें एक मंदिर का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में हमें एक कंप्यूटर सेंटर का दृश्य दिखाया गया है।

होटल के किचन का दृश्य दिखाया गया है।